यह एक गार्डन है यहाँ पर एक छोटा चर्च बना हुआ है।

कुछ छोटे गमले रखे हुए हैं।

यह एक चर्च है और गार्डन बना हुआ है बाहर पेड लगे हुए है।

यह एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बाहर कुछ गाडियां रखी हुई है।

एक स्विमिंग पूल बना हुआ है आस-पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं ऊपर आसमान है कुछ लाइट्स लगी हुई है।

यह एक हॉस्पिटल है यहाँ पर कुछ चेयरे रखी हुई है।